अलग अलग रंगों की पोशाक दिखाई--

इसमें हमें बहोत सारी कुर्सियां फड़ी हुई नजर--

प्लस का सिंबल भी ऊपर बना हैं।

से यह कोई दुकान का दृश्य लग रहा हैं।

इसका नाम मानसरोवर स्टेशनरी शॉप है।

अंदर कुछ लोग भी नजर आ रही है।

मेज और कुर्सियां भी पड़ी हुई नजर--

इसके ऊपर हमें पोस्टर पर श्री सनातन धर्मसबा गौशाला लिखा दि--

डाइट खे ऊपर एक आदमी खे --

उसके उपर सोडा सेंटर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

धूप से बचाने वाला कपड़ा भी लगा दि--

इसमें बहुत सुंदर डेकोरेशन औ लाइटों से की--

ग्राउंड की तस्वीर नजर आ रही है।

दुकान की लग रही हैं।